दिख रही है। नीचे गिला है।

मुझे यहाँ पे एक शॉप दिखाई दे रही है।

उपर की ओर गुम्बज दिखाई दे रहे हैं त्रिकोण शेप के।